यहां पर दो आदमी सीमेंट का थमालां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि सरियों से बांध रहे हैं।

उसके पीछे है पेड़ वगैरह भी है।

जिसके सामने एक बोर्ड भी है जिस पर लिखा है चिराग मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ।

उसके ऊपर दो कैलेंडर लगे हुएं हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बहुत से समान दिखाई दे--

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो की एक चलता हुआ आधा दिखाई दे रहा है और की एक बैठा हुआ आधा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी लाइट सीरियल से लगी हुई है।

दुकान के अंदर बहुत सारे खेल खिलौने दिखाई दे रहे हैं।

ने जूते उतार रखे हैं और भी कुछ ने उतार नहीं रखे हैं।

इसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ हैं जिसपे लिखा हुआ हैं कोरियर ऑफिस ।

सीमेंट के खाली रखे हुए है।

जेन्स दिखाइ दे रहे हैं और जे बाइक दिखाई दे रही --

चंद्रमा दिखाई दे रहा है और उस उसमें दो चेयर रखी हुई है।

यह एक हॉल सा दिखाई दे रहा है।

और जी रखी हुई है। मच्छरदानी भी है और जी एक शर्ट भी है।

कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जी कुछ नहीं।

पे आधे बैठे हुए है आधे खड़े हुए है।

यह एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट के आगे एक बाइक दिखाई दे रही है जोकि चलती हुई दिखाई दे रहे है।

स्कूल का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर।

और ये आस पास एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सोफे के आसपास बहोत से बर्तन रखे हुए हैं।

और मशीन के सामने एक टैटू बना गया है।

यह एक ईसा मसीह का मंदिर दिखाई दे रहा है।

डी_जे भी रखा हुआ है और ये लाइट भी लगी हुई है।

इस बरामदे में चार फैन लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में तीन दुकानें नजर आ रही है।

ये लाइट लगी हुई है।

भी लगे हुए है जोकि बॉडी के है।